ये फोटो किसी डांसिंग क्लास का है जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को डांस सिखाने का काम किया जा रहा है ।

ये किसी इस्कूल या कोलेज की फोटो है जिसमें की इ बहोत सारे बाहर की ओर चार पांच लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारी गाड़िया खड़ी हुई हेैं ।

और सब अलग-अलग तरीके से अपने अलग-अलग कुछ बनाने का काम कर रहे हैं ।

तथा काफी सारे लोग आते जाते नजर आ रहे हैं ।